यहाँ पे पार्क दिख रहा है पार्क के अंदर कुछ लड़का हुआ दिख रहा है यहाँ पे घर दिख रहा है घर के ऊपर टंकी दिख रहा है पेड़ पौधे सुख रहा दिख रहा है।

हरा दिख रहा है टेबुल धरा हुआ दिख रहा है और ये बैठने के लिए दिख रहा है यहाँ पे आसमान दिख रहा है आसमान का कलर नीला है यहाँ पर तार दिख रहा है ये लाइन भीतर गया हुआ है।

गासी दिखरा गासी पोस्टर लगा हुआ है आस्मान्न्ही दिखरा लाइट --

यहाँ पर भाई स्कूल दिख रहा है स्कूल के अंदर अ बच्चा पढने जा अ बैग टाँगे हुए हैं यहाँ पे ढाता घेरा हुआ है जो लोहा के है जो गेटवा पे--

इसके अंदर की तरफ कोई चीज दिख रहा है कोई चीज कंपनी है।

फाइव जी क्लास लिखा हुआ दिख रहा है का--

तभी टावर है टावर दिख रहा है आसमानी कलर नीला दिख रहा है।

शोक से ही मिलता हु का से केसे लिखा हुआ है --

पार्क दिखरा है पार्क के अन्दर बहुत सारा दुखरा है दिख रहे है।

और यहां पे एक बच्चा दिखा रहा है जो उ झुलुवा के नीचे बइठा हुआ है यहां पर फोक्स लगा हुआ है जो लाइट की तरह लगा हुआ है अंदर पार्क के अंदर लगा हुआ है पेड़ पौधा बहुत सारे दिख रहे हैं।

पे कुत्ता दिखरा है मुर्गी के काटने लाये यहां पे ब्लैक दिखरा है हरा पिंक कलर दिखरा है ग्राउंड का आदमी दिखरा है ।

और वहा पे खेत है जो खेत में कुछ नि रोपा हुआ दिखरा है यापे कुता है जो कातरा है मुर्गी को--

जंगल की तरह कपडा वपडा पसारा हुआ दिखरा है मुर खड़ा हुआ पाख नही फेलाया हुआ है।

ग्रीन कलर से गेरा हुआ देखरा है चमस में किसमें छुरा वुरा लेहरा हुआ दिखरा है खाने का बोहोत मस्त लगता है ये हम को नही खाना चाइए--

लाइट वुट लगा हुआ तारा दिख रहा है यहाँ पे और लाइट वुट--

यापे सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगा हुआ दिखरा लाइट लगा हुआ दिखरा है असी गेट खुला हुआ दिखरा है एल_जी लिखा हुआ दिखरा है यापे है अन्दर दो तिन आदमी बेठे हुआ दिखरा है।

पोर सीढ़ी पर भी लाइट लगा हुआ है जो मतलब पीला कलर का पड़ रहा है लाइट और ऊपर तो जी_एस_टी नंबर प्लेट भी लिखा हुआ दिखरा है ।

फुल सा दिखरा है यहा अंकल जी टीशर्ट पहने हुए है यहा पे ये सब बच्चा सब पड़ रहे है।

बहुत सारे घर दिखरे कार के उपर लाइट दिखरा है बॉल वाइट कलर का बर रहा है यहा पे--

आसमान भी आसमान कलर से मिल रहा है छत पे भी बोहोत सारा लाइट लगा हुआ वाइट कलर का लाइट जल रहा है ।

यहाँ पे एक गेट आया हुआ दिख रहा है और सारा सामान सा आया हुआ दिख रहा है।

यहां पर कोई चीज रखा हुआ दिख रहा है बहुत सारे सामान पे रखा हुआ है।

टेबल स्टूल पे रख रखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे वाइट कलर से ग्राउंड निचे पेंट हु दिख रहा है।

कान का पीटर वाइट कलर का दिखा रहा है कुड़सी भी लगा हुआ दिख रहा है कुड़सी पर फूल सजाया हुआ दिख रहा है।

और श-शायद घरे-घर में गेट भी बंद हैं और यहा पे घर का कलर भी प-प-पेंट किया गया हैं।

झाड़ू ऊधू रखा हुआ साइड में कौन तना खड़ा हुआ है।

मैदान है मैदान के अंदर क्रिकेट खेल रहा है वहा पे लगा हुआ है।

ये बॉलर भी बहोत महंगा है ये आसमान भी ये आसमान का कलर बहोत नीला है।

मैदान में दो तीन विकलालय है ग्राउंड है ग्राउंड में घास भी दिख रहा है।

फूल उल दिख रहा है दो तीन मंदिर का घर दिख रहा है घर है पोल दिख रहा है।

अभी यहाँ पे ग्राउंड है ग्राउंड के बहार एक आदमी दिख रहा है और वो सबके पेंटू दिखा रहा है घर देख रहा है पेंटू तू--

मौ साइबर का मैदान है मैदान के तरफ फूल उल बहत रंग बिरंगे फूल है सामान निकाला हुआ है बहार बादल साफ है एकदम ।

यह घर बना हुआ आसमान का का दिख रहा है और पीछे के घर में टाइल भी लगा हुआ है।